और यह एक बिल्डिंग है जो दो मंजिला इमारत लग रही है और पीछे के साइड में जो की हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

ये एकदम एक हॉल नजर आ रहा हैं जिसमें अलग अलग रैंको पर अलग अलग किताबें वे बुक्स सेंटर हैं ज जोकि --

निक्कर पहने हुए छत वहां ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उपर की तरफ में एक व्यक्ति खड़ा भी नजर आ रहा है और हरियाली भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे नाई की दुकान नजर आ रही है हेयर सैलून नजर आ रहा है जिसमें एक बड़े भाई साहब जो की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक --

इस तस्वीर में मुझे एक खुला हुआ गार्डन नजर आ रहा है जिसमें झूले लगे हुए हैं और ये एक नजारा बहुत ही शानदार नजर आ रहा है ऊपर की तरफ में आसमान --

इस तस्वीर में मुझे एक सैलून नजर आ रहा है इसे जेंट्स पार्लर भी हम कह सकते हैं जिसमें एक बड़े भाई साहब हैं जोकि अपने बाल की वाशिंग करवा रहे हैं और बाल की --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं एक रात का नाइट का दृश्य दिखाया गया है जिसमें फूलों की महक आ रही है और यह एक बड़ा ही --

अ जो कि बच्चे हैं जो कि अपने कलाका कला का आ बता रहे हैं जो कि कलाकृति बना रहे हैं अलग-अलग --

जो कि लोगो भी लगाया गया है हाउस ऑफ़ बीकानेर का स्वाद है।

इस तस्वीर में मुझे एक पेट्रोल पंप जो कि जिसके छत नजर आ रही है बस खड़ी नजर आ रही है और एक जो कि लड़का है वो खड़ा नजर आ रहा है।